ऊपर ट्यूब लाइट लगी है ऊपर भी बहोत सारे डिब्बे रखे हुए है एक पोलीथिन है।

आस-पास एगो पहिया पड़ल बा एगो और मशीन रखल बा एगो गोल घेरा बा।

एगो हॉल बा हॉल में ब्रैंचो बा टेबल बा एगो कुर्सी रखल बा लाइटो लागल बा आस-पास गेट बा।

यह भबन बा आस-पास ओरो भबन बा खम्बा लागत बा खम्बा पे छोट-छोट पोस्टर लगत बा एगो बाँस खड़ल बा।

फूल मालाएं लगत बा आस-पास घर बा घरों पे लोग बा।

डोरी बा मस्जिद के नीचे दु गो गेट लगल बा गेट नीले बा।

ऊपर लइटो लगल पंखा लगल बा काँचो लगल बा आगे बड़ी-सी बिल्डिंगो रखल बा जूता-चप्पल रखल --

बिल्डिंगो में दुकानो बा बड़ल-बड़ल पोस्टर लगत बा आसपास खंभा बा।

रोड ई यो बा आसपास दिवाल ई यो बा।

इ त कुछो दोकान लगत बा ठेला बा ठेला पे सब्जी बा।

इ त एको दुकानों बा दुकान में कपड़ा रखल बा कबर्ड बनेला कबर्ड में कपड़ा रखल बा।

यहाँ एगो मकानों बा मकानों के अंदर एगो पोस्टर लगल बा मकानों के बाहर लाइटो जलत बा एको आदमी खडल बा।

स्टूलों रखत बा बाहर छोट-छोट गमला बा गमला में पौधा लागत बा।

यहाँ एगो किला बा किले के आस-पास पेड़ो बा किले के ऊपर कलस बा किलो के पास में एगो मकन बा।